टेबल बनी है टेबल पर कैलकुलेटर पेन केचि और कॉपी रखी है एक पर्सन बैठे है एक चेयर रखी है।

इमेज में बहोत सारे टेबल और चेयर्स लगे हुए है आ टेबल्स पर रेड कलर का टेबल क्लॉथ लगा हुआ है।

आ बिजली का खम्भा लगा है।

आ लाइट्स लगी हुई है अ फैन लगे हुई है विंडोज बनी हुई है ऐ_सी लगा है।

इमेज में बच्चें डांस कर रहे है मिरर लगा है मिरर में बच्चें दिख रहे है।

आ कुछ बॉक्सेस रखे हैबॉक्सेस में भी सेव फल रखे हुए है।

अ टेबल पर कॉपी और कॉम्पोक्स बॉक्स रखा है बच्चे कुछ लिख रहै है बैग्स रखे हुए है ।

अ दीवार पर एक ब्लू बोर्ड लगा है उसपे फ्लावर्स लगे हैं ।

आ थैलियों में नीम्बू बंधे हुए है टमाटर रखे है गाजर रखे है मेथी रखी है।

परदे पर रेड और वाइट फूलो से डेकोरेशन किया है एक येलो कलर का पोस्टर लगा है।

उस ऊपर छतीसगढ़ पररगति सील ब्रामण समाज तीजा तिहार लिखा है।

इमेज में एक ब्रिज बन हुआ है आ ब्रिज पर एक कपल खड़ा हुआ है।

कुछ रेड कलर के है कुछ पिंक कलर है कुछ येलो कलर के है कुछ वाइट कलर के है।

इमेज में एक वाइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।